यहा दिख रहा है कि ये जंगल मे एक कि दिख रहा है और ये बंगल ये जंगल मे सबसे अच्छा पानी भी भर रहा है यही सबसे अच्छा पीक भी हम देख सकते है। सबसे अच्छा पीक भी है।

और हम देख सकते हैं पेड़ पौधे भी अच्छा है या सराउंडिंग भी अच्छा है आप देख सके तो यह सबसे अच्छा पिक है क्योंकि प्रकृति का अच्छा पिक हम देख सकता है पर्यावरण भी अच्छा है।